यह चित्र में योगा करते हुए लोगों को दिखाये गये हैं।

बनारस में भेलूपुर स्थित प्रदूषण को रोकने का यह एक केंद्र है|

उनका एक ही नारा है प्रदूषण रोकिए पर्यावरण बचाईए पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा।